यह एक जिम जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट है जिम में काले रंग के लाल रंग के चादर जैसे ये जिम में बहुत सारे लाइटे बगल बगल में कुछ आईने लगे हुए है।

एक मेन रोड में एक बड़ा सा होर्डिंग --

एक बड़ा सा प्रवेश द्वार जिसमे लोहे का गेट लगा हुआ है पहरेदार --

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो स्पेयर पकड़ा हुआ है और पीछे खंभा लगा हुआ है।

बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई है हॉस्पिटल के आस पास कुछ लोग हॉस्पिटल के किनारे बड़ा सा पौधा है और एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है।

ये एक जीम है कुछ रनिंग इंस्ट्रूमेंट रखी हुई है बगल मे बलून रखा गया हैं सीने में काँच की खिड़की है।

बिल्डिंग में बहुत सी बाल्कनी दिखाई दे रही है किसी अ दुकान की तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत से गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।